इस इमेज में जमीन पर बैठ कर दो बच्चियाँ खा रही हैं यहाँ एक बच्ची फेविकोल से कुछ चिपकाते हुए नजर आ रही हैं।

एक व्यक्ति हाथी पर रोका है लंबा सा बांस लिए हुए हाथी पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है हाथी के दो सफेद दांत भी नज़र आ रहे हैं।